यहां पर आप देख सकते है एक बहुत बड़ा गार्डेन जैसा दिखाई दे रहा है जिसके चारो ओर हरियाली है जमीन पर हरी-हरी घास है।

जो की देखने मे बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

यहां पर आप देख सकते है की बहुत ही सुन्दर मैदान दिखाई दे रहा है।